यहां सामने कटीली झाड़ियों के बीच एक चबूतरा दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित किया हुआ है।

फूल के अलावा यहां पर दो दीपक और अगरबत्ती दिखाई दे रही है।

ऊ यहां पर कुछ पेपर दिखाई दे रहे हैं जिन पर अ कुछ पूजा पाठ का सामान फेंका गया है।

यह जिसके ऊपर सरीसप ग्रह के लिखा हुआ है उस पर सांप की आकृति का चित्र बना हुआ है।

टेबल पर एक सुंदर सा अ गुलदस्ता दिखाई दे रहा है फूलों से सजा हुआ।

कुछ सीलिंग फैन दिखाई दे रहे है और साथ ही में कुछ वॉल फैन भी दिखाई दे रहे हैं।

अ उसके साथ ही अ एक तरफ हम देख सकते हैं यहां पर कंप्यूटर रखा हुआ है डेस्कटॉप अ रखी हुई है।

जहां फोटो में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहां इसके मुख्य द्वार के ऊपर चार घोड़े बने हुए हैं।

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें सुपर इंजीनियर वर्क्स ललितपुर के नाम से एक बोर्ड लगा है।

एक अ ऑरेंज कलर की है और एक रेड कलर की बस दिखाई दे रही है।

जहां पर प्रजापति दूध डेयरी के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां एक तालाब या नदी बहती हुई दिखाई नदी है।

यहां सामने हमें टाइगर और उसके शावक की मूर्ति दिखाई दे रही है एक हिरन बना हुआ है मूर्ति में।

अ एक दीवार है। दीवार पर पीलीभीत टाइगर रिज़र्व लिखा है। उस पर चीते की आकृति बनी हुई है।

यहां हमे कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है जो सफेद कलर से है।

यहां एक पानी का झरना बड़े खूबसूरती के साथ दिखाया गया है।

कुछ हरियाली इसके आस पास है जहां पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ मेडिसिंस नजर आ रही है जिसमें हिमालया की कुछ प्रॉडक्ट रखे हुए हैं।

यहां एक महिला नृत्य करती हुई हरे रंग की और लाल रंग की साड़ी में दिखाई दे रही है।

ये मंदिर का गुंबज दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर का है।

हाँ पास में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो अह पिंक कलर की है।

यह किसी रेस्टोरेंट का फोटो है जहां पर गार्डन में कुछ चेयर्स लगी हुई है और टेबल लगी हुई है।

साथी में कुछ कपड़ों के बॉक्स भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं।